और यहां पर बहोत सारे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

यहां पर बहोत सारी लाइट्स लगी--

और यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है।

घर बन रहा है जो--